और गमलो में पौधे लगे हुए हैं। एक गमलें में येलो कलर का फूल रखा हुआ है और या --

यहाँ पे एक बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है मंदिर बना हुआ है।

जो की हरे-भरे हैं यहां पे गेट बना हुआ है लकड़ी का ---

और एक ब्लैक कलर का बोर्ड है जिस पे गोल्डन और व्हाईट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

पे अ डेक्स रखी हुई हैं और यहाँ पे जो डेक्स हैं वो लकड़ी की है। यहाँ पे स्वीचेस हैं। यहाँ पे कर्टेन्स लगे हुए हैं ।

यहाँ पर एक मकान है जो की पर्पल कलर का है और व्हाइट कलर का है यहा पे दो बाइकें खड़ी हुई है आसमान नीला है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है पास में एक पेड़ लगा हुआ है जो की हर भर है।

आ रक्शे खड़े हुए है एक आ हरे कलर का है और एक ऑरेंज कलर का है एक पिंक कलर का है पिछे जो दीवाल है वो सफ़ेद है।